यह जो चित्र है। वह बनारस में से सारनाथ के पास सीता रसोई की चित्र है।

दृश्य है। यह देख सकते है घाट किनारे का दृश्य है और यह ऊपर से लिया गया है। आप देख सकते हैं पानी कितना स्थिर दिख रहा है।

आप यह देख सकते हैं ये जो सामने दिख रहा है ये यूको बैंक का ये एटीएम है और हम जानते हैं कि आज के समय में एटीएम कितना ही जरूरी हो गया है |